यह तस्वीर किसी भवन का प्रतीत हो रहा है जिसे सफेद एवं लाल रंग से रंग गया है।

तथा लाउडस्पीकर बांधा गया है।

तथा दूसरे पर सिर्फ दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

यहां हमे कई सारे लोहे के सरिए बाहर की ओर निकले हुवे दिखाई दे रहे है।

एवं सामने की ओर हरे भरे मैदान भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक बांस से बनी बड़ी सी टोकरी भी रखी गई है।

इसके नीचे सूर्य की किरणें पहुंच रही है।

जिनके हाथों में भारत का झंडा लहराता हुआ दिख रहा है।

इसे चारों तरफ से लोहे के ग्रिल से घेरा गयाहै।

यहां हमें कुछ कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं जो मरून एवं काले रंग की है।

तथा कुछ पुस्तके भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं साथ ही में बच्चों को खेलने वाले स्टिक से बने पैट एवं बाल दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर किसी पार्क की प्रतीत हो रही है।

यहां हमें कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

तथा दो गुमटियां भी दिखाई दे रही हैं।

एवं गेट के बाहर एक पुरुष कार की डिक्की मे से कुछ सामान निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है।

वहां कुछ कुर्सियां भी रखी गई है जिनका कलर मलरून एवं कला है।

जो पीछे खड़े लाल रंग के इस नए ई रिक्शा की है।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

इसके बोर्ड पर विगनन बुक सेंटर स्टेशनरी लिखा दिखाई दे रहा है।